मुझे इस चित्र में सड़क नजर आ रही है।

मुझे इस चित्र में कुछ बच्चे दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में एक मशीन नजर आ रही है।

मुझे इस चित्र में दो आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे इस चित्र मे बहुत सारी कॉपियां रखी हुई--

दिखाई दे रही है मुझे इस चित्र में लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में दो बाइक खड़ी हुई दिख रही है। मुझे इस चित्र में एक पेड़ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में कुछ पुरुष खड़े हुए दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है।

चित्र में कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस चित्र में दो लाल रंग के बैग दिखाई दे रहे--

मुझे इस चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे है।

पत्रा दिखाई दे रहा है मुझे इस चित्र में--

मुझे इस चित्र में आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं।